और एक और है वहां पे बहोत सारे बैठे हैं पीछे और एक यहां पे वाइट कलर का--

ये ये एक आदमी है आदमी मछली की शर्ट देख रहा है यहां पे बहोत ज्यादा जाम लगा हुआ है।

यहां पे एक रे ढाबा है यहां पे लोग बैठे हुए हैं और यहां पे एक डस्टबिन है बाइक है।

दो यहां पर दो दो रिंग लाइट है और येलो कलर की एक लाइट है रिंग लाइट में।

ये एक यहां पे येलो कलर की चटाई और रेड कलर की चटाई बिछी हुई है। यहां पर ग्रीन कलर का--

सामने आपको ब्लू और ब्लैक कलर की टी शर्ट लग रखी है यहां पे--